हम देख पा रहे एक बाउंड्री को जो कि ब्राउन और गोल्डन कलर की मिल्क से बनी हुई है जिसमें अह थोड़ी पुरानी होने की वजह से उसमें कुछ काई जमा है और सामने की तरफ हमे--

पीछे की तरफ हमे कुछ बिल्डिंग्स नजर आ रही है जिसका कलर क्रीम है और एक दूसरी साइड एक और बिल्डिंग है उसका लाइट क्रीम है।

बड़ा सा हॉल देखने को मिल रहा है जहाँ पर लगे हुए हैं टे अह एक टेबल टेबल पे रखा हुआ है कैरम बोर्ड कैरम बोर्ड के चारों और हमें चेयर्स लगी हुई देखने को मिल रही।